और ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना है लाल रंग की चुन्नी से उसका मुंह ढका हुआ है और उसके बगल में एक आदमी भी डांस कर रहा है जिससे सफेद रंग का कुर्ता पहना है ब्लैक --

यह दृश्य एक मैदान का है और बीच में एक रोड गया हुआ है इसके किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं और किनारे की तरफ लाल रंग की दीवार है।

ऑरेंज और ग्रीन कलर का काउंटर बना हुआ है और कुछ गेम में सामने स्क्रीन बनी हुई है उस स्क्रीन में लाइट जल रही है खूब रंग बिरंगा--

यह दृश्य मिठाई की दुकान का है इस मिठाई की दुकान के बाहर कुछ सीढ़ियां हैं सीढ़ियों के पास--

तीन बच्चें हैं जो फौजी ड्रेस में है फौज की ड्रेस पहने हुए हैं और एक लड़की जो परी बनी हुई है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का है इस रेस्टोरेंट पे तीन टेबल लगी हुई है और किनारे किनारे कुर्सिया लगी हुई हैं।

यह एक ज्वेलरी शॉप है इस ज्वेलरी शॉप पे काउंटर बना हुआ है काउंटर के किनारे किनारे कुर्सियां रखी गई हैं।

इस दृश्य में एक आदमी चट्टान पे खड़े होके पानी पि रहा रहा है उसके पीछे बहोत बड़ी चट्टान गई हुई है उसपे--

ये पिक्चर एक नर्सरी की है यहाँ छोटे छोटे बहत सारा के पौधे लगे हुए हैं जो अलग अलग तरह के है कुछ पौधे हरे हरे हैं।

और उसके बीच में कुछ फूलों के पौधे हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं उसके बगल में--

वैसे ज्यादातर सफेद रंग की गाडिया खड़ी है बिच में एक लाल कलर की गाडिया खड़ी है और किनारे किनारे मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

जिसपे दिल बने हुए हैं सामने की तरफ एक स्कूटी हुई है सामने की तरफ स्कूटी हुई है और टेबल की तरफ ये सफेद--

गोल गोल पोल भी लगे हुए हैं और किनारे किनारे इसके पत्थर रखे गए हैं बीच में पानी है।

एक काले रंग की और दो सफेद रंग की और यहां पे कुछ लोग भी खड़े हैं यहां साइड साइड में--

यह एक पार्क है इस पार्क में झूला बना हुआ है यह झूला लोहे की अनेक तरह कि छड़ों से बना हुआ--

यह दृश्य एक बर्थडे पार्टी का है यहाँ पर गोल टेबल रखी हुई है उस टेबल के किनारे किनारे लाल रंग के गुबारों--

यह पिक्चर डाक घर की है इसमें डाक घर बंद है और सामने की तरफ जगह है और सामने --

यह एक ढाबे की पिक्चर हैं इस ढाबे के बाहर बहुत सारी कुर्सी और टेबल रखे हुए है सामने की तरफ काउंटर लगा हुआ है उस काउंटर पे एक --

हरे रंग से ऊपर से सजावट की गई अंदर की तरफ काफी लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और सामने लाइट जल रही है बहत सारे लोग यहाँ--

यह एक लाल रंग की बिल्डिंग है जो ईंटों से बनी हुई है यहां--